और एक टंकी रखा हुआ है और कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं।

दीवार के बराबर साइड में दो गेट भी रखे हैं।

मंदिर के बाहर एक लोहे का चैनल भी लगा हुआ है।

और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं।

इनके बाहर कुरकुरों की पन्निया भी टंगी हुई हैं।

और बराबर साइड में कुछ पेड़ लगे हुए भी है।

और इस बिल्डिंग के बाहर कुछ कारें भी खड़ी हुई हैं।

और कुछ आदमी भी चलते फिरते नजर आ रहे हैं।

और कुछ कुर्सियां भी रखी हुई हैं। एक स्टूल प्लास्टिक का भी रखा हुआ है।

कुछ समान लोहे का भी रखा हुआ है और कुछ प्लास्टिक का--

यह एक ढाबा है ढाबे के बराबर साइड में कुछ पेड़ भी खड़े हुए है।

और एक ये आदमी भी बैठा हुआ है।

इस होटल के सामने एक कुर्सी भी पड़ी हुई है।

यह एक परचून की दुकान की रेडी लगी है।

यह एक बहुत ही बड़ा रूम है।

और कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई है।

यह एक सरकारी दफ्तर हैं।

पीछे आदमी भी खड़े हैं।

यह एक बहोत ही बड़ी जिम की दुकान है।

एक आदमी भी खड़ा हुआ है।